ये एक सड़क का चित्र है जहां पर एक बड़ा सा गेट बना हुआ है उसके पास एक घर बना हुआ है।

उस पर छत सिमेंट की छत डली हुयी है बाहर एक कुत्ता लेटा हुआ है और पेड़ लगे हुए है।

सीढ़ियां बनी हुई है जालियां बनी हुई है पेड़ लगे हुए है मंदिर बहुत लंबा है।

ये चित्र एक दरवाजे का है जिस पर काला रंग किया हुआ है दीवार का रंग पीला है।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

ये एक कमरे का चित्र है जिस पर लाइट लगी हुई है टेबल रखी हुई है।

इस चित्र में पानी बहता हुआ दिख रहा है हरे पहाड़ है।

पानी का कलर सफेद है आधे पानी का कलर ब्लू है।

एक लड़की है सफेद कलर के कपड़े पहने हुए हैं हरे कलर की लाइट दिख रही है एक लड़का काले कपड़े पहना हुआ है।

इस चित्र मे हरा गुम्बत दिख रहा है एक सफेद गुम्बत दिख रहा है।

जमीन पीले रंग की है कांच का दरवाजा दिख रहा है लाइट दिख रही है।

ऊपर काले रंग का बोर्ड लगा हुवा है पेड लगे हुवे हे गुंबद दिख रहा है पीले कलर की दीवार दिख रही है दरवाजा दिख रहा है।

सूंड पीले रंग की है पीछे पेड़ लगे हुए हैं हाथी जमीन पर खड़ा हुआ है।

इस चित्र मे पीले रंग कि एक कमरा बना है एक लोहे का दरवाजा है पंखे लगे हुए है शेड डला हुआ है पेड़ लगे हुए है।

इस चित्र मे एक आदमी दिख रहा एक कार दिख रही हे काले रंग की दो कार दिख रही है।

गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है सफेद कलर का शेड डला हुआ है एक तस्वीर बनी हुई है ज़ीने बने हुए है।

पानी का रंग नीला है कमरे बने हुए हैं सफेद दरवाजे लगे हुए हैं पेड़ लगे हुए हैं हरी घास बीछी हुई है।